लोग जो अपने परिवार है वो यहां पर आया हुआ है अपना माथा टेकने शरीर आशीर्वाद लेने के लिए।

और कुछ पौधों के जो फूल हैं वो पीले कलर के हैं और कुछ के जो जामुनी कलर के बने हुए हैं।

और एक लड़के ने शर्ट जो है वो ग्रीन कलर की पहनी हुई रेड कलर की पहनी हुई है बिल्डिंग जो है उसको ब्राउन कलर से बनाया गया है।

एक आदमी फोन पर बात करे इसका नाम जो है जगह का डिगन ऊपर लिखा हुआ डिगन और साथ में ग्रीनरी भी लगी हुई है।

ये दिखने में एक होटल लग रहा है और कुछ लोग जो बैठे खाना खा रहे हैं और कुछ खा के अपने घरों को जाने की तैयारी कर रहे हैं और एक आदमी --

और एक गाड़ी जो है अभी साइड पे खड़ी है उसके पास एक आदमी खड़ा हुआ है और यह जो पेट्रोल पंप है वहां से कुछ आदमी खड़े हैं इकट्ठे बातें कर रहे --

भी उसके बनाए हुए हैं उसको मुख्तलिफ कलरों से बनाया गया है उसका दरवाजा जो है रेड कलर का जालीदार बना हुआ है और बहुत प्यारी बिल्डिंग लग रही--

ये एक दुकान है उस पे दो आदमी खड़े हैं वो सेल कर रहे हैं चीजों की दिखने में ऐसा लग जैसे बादाम की गिरियां और अखरोट वगैरह जो--